इस तस्वीर में मुझे सजावट का सामान दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे दो बेंच दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ बेंच दिखाई दे रही है।